सामने में एक ट्यूबलाइट भी नजर आ रहा है। सामने वाली दीवार का कलर ग्रे है।

पीछे वाली कर्टेन का कलर ऑरेंज है और यहाँ पर ढेर सारे फूल और पो --

इनमें से एक शर्ट का कलर है नीला लाल और यहाँ पर --

सामने में एक वाईट कलर की गाड़ी भी जा रही है और पेड़-पोधे भी रोड पर लगे हुए हैं।